इस फोटो में एक दुकान दुकान दिखाई दे रही है दुकान में कोई होटल दिखाई दे रहे है जिसमें ये --

सोफा लगा है जो कि काले रंग का है काउंटर पर एक व्यक्ति खड़ा हैं सामने बहुत सारे व्यक्ति बैठे दिखाई दे रहे हैं आस पास कुछ पंखे और लाइटे जल रही है।

और यहां पर बच्चों ने एक चित्र बनाया है जिसमें तीन चार झोपड़ी दिखाई दे रही हैं।

और कुछ बिजली तारें भी यहां पर एक मैदान भी दिखाई दे रहा है आसपास कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और यहां पर कुछ कूलर और फ्रिज भी लगी हुई है इसके अंदर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां भी बनी हुई है।

और एक दुकान है जिस पर कुछ पोस्टर भी लगे हुए हैं आसपास कुछ गाड़ियां और मोटरसाइकिलें भी खड़ी हैं।

एक सड़क भी जा रही है पास में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक पारक दिखाई दे रहे हैं पारक में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं और कुछ झूले लगे हुएं --

एक घर दिख रहा है घर का रंग सफेद है।

सभी कुर्सियों पर बैठे हैं सभी कुर्सियां लोहे की बनी हुई है और कांच के बहुत सारे गेट भी बने हुए हैं एक काउंटर पर एक व्यक्ति बैठा है जो कंप्यूटर चला रहा है।

उसी रेस्टोरेंट की है यहां पर बहोत सारे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं रखी गई है जिसमें वाशिंग वरीसी मशीन फ्रिज टी_वी कुलर --

पास में ये एक रोड का बोर्ड भी लगा है जिस पे चेतावनियां दिया गया है आसपास बहोत सारी दुकानें भी बनी हुई है अंदर जाने के लिए बनी --

ये काम चल रहा है पीछे बहोत सारी लेडिज कपड़े रखे गए हैं।

और पास में कुछ सफेद कपड़े भी रखे गए हैं।

जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है जिसका निर्माण कार्य चल रहा है।

यह तस्वीर एक दरगाह की है दरगाह में बहोत से लोग बैठे हैं जिसके माथे पर टोपी लगाई हुई है।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ देश के जा--